ये पूर्णिया जो देखने में काफ़ी बड़ा है और चारो ओर रंग-बिरंगे फुल लगा है और बड़े बड़े पेड़-पौधे है जो देखने में हरा-भरा है सामने छोटे-छोटे घास वास है | रंग-बिरंग के फुल है |

यह जिम एक जिम लेडीज जिम है यहाँ पर बहुत सारे लेडीज व्यायाम कर रहे हैं और योगा आसन कर रहे हैं बगल में चप्पल रखा हुआ है और दीवार पे कुछ गुलदस्ता रखा हुआ है बगल में एक झण् --

यह दुर्गा मंदिर है जो देखने में काफ़ी बड़ी है और रंग-बिरंग के लाइट से सजाया गया है और रात का समय है कुछ लोग खड़े होकर के पूजा कर रहे हैं कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं।